फेविकोल रखा हुआ है। पेन्सिल रखा हुआ है। इरेज़र रखा हुआ है और यहाँ पे कुर्सी पे कपड़ा रखा हुआ है।

मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है। रोड पे बोहोत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। एक बाइक खड़ा हुआ है। दो आदमी खड़े हैं।

बूढ़े लोग भी खड़े हैं। जवान लोग भी खड़े हैं। औरतें भी हैं। एक औरत बुरखे में खड़ी है।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है। शाम हो गयी है और यहाँ पे गाड़िया दिखाई दे रही हैं। रोड पर वाइट कलर का लाइन मारा गया है।

मुझे यहाँ पे बहोत सारी सोफे रखा गया है और यहाँ पे पोस्टर आदमी बना हुआ है और वहाँ पे ऍम एस --

और यहाँ पे ब्लैक कलर का सब बनाया गया है। ऊपर छोटे छोटे लाइट लगे हुए हैं और टायर को पीला रंग किया गया है।